और अपने इन चित्रकारी की वजह से पहचाने जाते है इसकी दीवार पर काफी सारे चित्र बने हुए है मूर्तियां बनी हुई है।

यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई गई होगी यहाँ पर पूरी दिवारो मे सुंदर मूर्तियां बनी हुई है।

ये दीवार का कलर अ यलो हेगा और यहाँ पर स्टूल रखे हुए है दो दोनों स्टूल के ऊपर तब्ले रखे हुए दो एक माइक हेगा।

और अ-अ-अ-यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई है गी और इसमें नीले कलर का टीन का चादर डला हुआ है। आस पास कुछ हरे पेड़ लगे हुए हेगे।

ऊँची हेगी नीचे से ये मीनार बहुत चौडी है और उपर से पतली होती हुई हेगी ये किला पहाड़ पर बना हेगा काफी बडा पहाड हेगा और मीनार के आस पास कुछ पेड है।

यहा पर एक दीवार बनी हुई है इसमे काफी सारे चित्र बने हुए है इसमे राजा और रानी जैसी मूर्तिया बनी हुई है ये और काफी चित्र कारी--